भी अच्छा लगता है यहाँ पर सजावट है बढ़िया है साफ सुथरा भी है उम उम दुकान है ये ठाकुर जी का देखने में बहुत अच्छा है यहाँ कुर्सी तुर्सी बैठने वाला सुवी --

यहां पर देखने में बहुत अच्छा लगता है यहां पर आदमी है देखने में बहुत अच्छा लगता है कुर्सी तूर्सी भी है रखा है देखने मे बहुत अच्छा लगता है।

--चश्मे में बहुत बढ़िया लगता है शर्त देखने में बहुत बढ़िया लगता है यहां पर आदमी तो आदमी है देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है।

--चश्मा लगा है और दुकान है देखने में बहुत बढ़िया लगरा है शर्ट भी बाडिया है देखने मे बहुत सुंदर है सर्त भी अच्छा लगता है देखने मे बहुत बढ़िया लगता है यहां पे दुकान बढ़िया जो हम के रहे है।

ऐ बहुत अच्छा लगता है बाल्टी-तल्टी भी रखा है देखने में बहुत अच्छा लगता है बहुत सही लगता है देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है सारा चीज ये अच्छा लगता है देखने में बहुत बढ़िया लगता है।

आदमी सब बहुत है देखने में बहुत अच्छा लगता है बहुत फ़ोटो सेल्फी ले रहा है देखने में बहुत बढ़िया है।

देखने में बहुत अच्छा लगता है रोड तोड साफ-सुथरा भी है देखने में बहुत अच्छा लगता है हरा पेड़-पौधा है देखने मे बहुत अच्छा लगता है बहुत सुंदर है सारा चीज भी अच्छा है देखने में।